बिल्डिंग के पास खड़े होकर बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे है यहां तीन चार गाड़ियां खड़ी हुई है यहां जैंट्स भी है लेडिज भी है ये लोग गाव के न --

का बैनर लगा हुआ है ये एक गाड़ी भी खड़ी हुई है सड़क पूरी कच्ची है।